फूल लगे हैं और अंदर एक बहोत बड़ा--

यहां सामने बहोत सारे कबूतर खड़े हैं।

ये एक कमरा है सामने यहां टेबल और सोफा लगा हुआ है।

सामने शीशे का दरवाजा लगा हुआ है।

सामने एक शेड बनीं हुई हैं उस शेड लाल और सफेद रंग किया हुआ हैं।

सामने एक घर भी दिख रहा है।

ए एक बहोत बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही है यहां बहोत सारा--

यहां पर बहोत सारे बर्तन रखे हुए--

यहां एक गार्डन बनी हुई है गार्डन में हरी भरी घास और--